यहाँ पर दो लोग देख रहे हैं जो माल टाइप बना रहे है रेत भी पड़ी हुई है सामने फूल भी लग रहे हैं कुछ गेंदा टाइप के फूल लगे हैं और भी हरयाले पेड़ पौधे हैं यहाँ पर।

कुछ सीट देख रही है जो बिल्कुल खाली है बस की तरह नजर आ रहा है भी लग रहा है।

यह एक शख्स बैठा हुआ है जो कि अपनी गर्ल-फ्रेंड से बात कर रहा है।